दवाइयों का और यहां पर एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है।

यहां पर मेरे को काफी सारे सामान दिखाई दे रहे दुकान दिखाई दे रही।

बड़ा सा एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है इस साइड में भी एक पोस्टर है।

काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे है काफी सारे पेड़ है जो की पीछे पीछे हैं।

पीछे काफी सारे उम्म पेड़ हैं। काफी सारे दूर-दूर में घर भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर बादल दिखाई दे रहा है।

पीछे काफी सारे में कोई आदमी दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा घर दिखाई दे रहा है जो कि काफी दूर में है।

यहां पे भी आगे कुछ सामान रखे हैं जो कि डिब्बे जैसा रखा हुआ है।

यहां पर मेरे को शीशे दिखाई दे रहे हैं काफी सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं।

और बगल में एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

और वहां पर पीछे काफी सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो कि काफी दूर है।

आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जोकि इस साइड में भी है उस साइड में भी हैं।

यहां पर बगल में भी काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं दो तीन महिला दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मेरे को एक बड़ा सा ढाबा दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है न्यू अमन ढाबा।

और बगल में एक छोटा सा घर रखा हुआ है जोकि आगे दिखाई दे रहा है।

और बगल में काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बगल में भी घासे है काफी सारी और बादल दिखाई दे रहा है।

और एक यहां पर मेरे को पोस्टर भी दिख रहा है जो कि काफी पीछे है।

यहां पे बॉटल भी दिखाई दे रहा है पीछे भी दो आदमी दिखाई दे रहे--

र ये बड़ा सा स्कूल दिखाई दे रहा है काफी सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

पत्थर भी दिखाई दे रहे जोकि नीचे पड़े हुए हैं काफी सारी बोरियां दिखाई दे रही है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है। इधर भी एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में फोन --

पैर में कुछ चलने वाला भी रखा हुआ है पीछे काफी सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी दूर दूर--